चलाई जा रही है बस के सामने लिखा है बेंगलुरु इसलिए पता चलता है कि यह पांडिचेरी--

पेड़ पे रंग बिरंग कलर हैं।

बाहर की दुकान का नाम गणेश--

और देखते हैं पीछे की नाव ब्राइट येलो और--

सन राइस दिख रहा है।

स्टॉल छोटी सी है जहां पर चाय कॉफी मिलती है ऊपर और आगे के हिस्से में --

इस इमेज में एच_डी_एफ_सी बैंक का ब्रांच का दरवाजा दिख रहा है यहां कुछ लोग अन्दर जाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं।